जो की श्री सांई ऑटो गैस --

और बराबर वाले खिड़की भी खुली हुई है और--

डाउन सीलिंग का डिजाइन बना हुआ है।

शीशे का गेट लगा हुआ है इसके सामने बहुत अच्छा--

थ्रस्डे और संडे क्लोज रहता है।

ये सोफे रखे हुए है।

और कुछ आदमी बैठे हुए इंजॉय भी कर रहे।

एक कार खड़ी है छत पर एक हरे रंग की टंकी रखी --

ये अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं लगी है।

ओ नई लाल रंग की कार है और एक आदमी --

यह एक बहुत सुंदर मकान है।

इसका लगता है अभी मुहूर्त हुआ है।

पौधे पड़े हुए दिखाई दे रही--

इसमें बहुत अच्छी अच्छी बेंच --

हुए हैं जो कि थान --

एक फैन लटका हुआ है।

तथा लोहे का पुल बहुत लंबा पुल दिखाई दे रहा है।